संतरे पपीते सेब भी दिख रहे हैं।

यहाँ बहुत सारे पिंजरे दिख रहै है।

पेड़-पौधे बड़े-बड़े और छोटे--

बड़े-बड़े फोटो फ्रेम --

पेड़ दिख रहे है कपड़े टंगे--

बड़ा सा पीछे पेड़ लगा हुआ है।

जिसमे बड़ा एम_आर_एफ --

यहाँ बड़ी बड़ी दुकाने दिख रही है।

पाजी पैथोलॉजी लैब का ब --

बाहर बहोत सी लडीसे और जेंट्स खड़े हुए हैं।

वन प्रोग्राम मेनी प्रिविलेज का बोर्ड लगा है।